और अंदर की तरह भी बहोत सारे गमले रखे हुए है और पेड़ लगे हुए है उसमें--

इसमें कार खड़ी है और बाहर की तरफ दो तख्त रखे हुए हैं।

और एक अ यहां पर अ मधुमक्खी शायद पालन है।

जो उसमे अं मतलब डांस कर करती हुई बनी है।

यह किसी ऑफिस का सीन है और यहां पर एक बहोत बड़ी मेज रखी है कांच की है और यहां पीछे की तरफ दो सीटें लगी हुई हैं वो चेयर रखी हुई हैं।

यह एक हलवाई की दुकान है और यहां पर काउंटर है जिसमें बहोत सारी नमकीन रखी है बर्फी रखी हुई है पेढे है लड्डू है --

यहां एक दीवार खड़ी है ऊपर की तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

यहां पर बहोत सारी कैंडल लगी हुई है और कैंडल स्टैंड है और यहां पूरे के पूरे उसमें अंधेरा है।

एक ट्रैफिक का सीन है और यहां पर बहोत अ सारे ट्रैफिक है जो ऑटो अ कुछ ऑटो है यहां पर स्कूटी है बाइक है गाड़ीया है।

एक मेडिकल के का मेडिकल है और यहां पर मेडिकल दवाइयों का सारा सामान है यहां।

और कुछ शैंपू भी रखे हुए हैं कुछ क्रीमें रखी हुई है।

और यहां टैबलेट रखी हुई है और एक आदमी जिसके फेस पे मास्क है।

डिजाइन लगे हुए झांकी निकल रही है ऐसा लग रहा है और यहां पर--

व्हाइट कलर का काउंटर है यहां पे कुछ लोग बैठे हैं चेयर में और यहां पे एक शीश गेट लगा हुआ है।

यहां गंगा जी का सीन है और यहां पे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं लेडीज़ हैं जेन्ट्स हैं।

अ कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हैं झालरें लगी हुई है यहां पर--

एच_पी गैस का स ट्रक है बहोत बड़ा और यहाँ पर--

और यहां बाइक खड़ी हुई है यहां बहोत सारे लोग खड़े हुए है।